एक बैंक मतलब घर है या बैंक है या फिर स्कूल जैसा बना हुआ है। ब्लू कलर का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है कुछ और शटर दिखाई दे --

यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है जिसके ऊपर दीवाल जैसी उठी हुई है उसपे ब्रिज बना हुआ है और जो ब्रिज जो है वो --

और तालाब के एकदम साइड में बोहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ वगैरह भी यहाँ पे बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं। आसमान जो है यह नीला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे काफी सारे पेड़ है।